और बाजू में एक आदमी माइक में कुछ बोल रहे हैं।

कृष्णा सुपर मार्च बोल के यहां पे एक ग्रोसरी स्टोर है ।

यहां पे हमको आपातकालीन सेवा का रूम दिख रहा है ।